आ रहा है इस फोटो में।

इस फोटो में बादल नजर आ रहा इस फोटो में पत्थर नजर आ रहा--

इस फोटो में वर्षा नजर आ रहा--

इस फोटो में मुझे पहाड़ नज़र आ र--

इस फोटो में बादल नज़र आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे गाड़ी नज़र आ रही--

इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा--

नजर आ रहा इस फोटो में शटर नजर आ र--

इस फोटो में बंद देव फिटनेस सेंटर नजर आ रहा है इस फोटो में जिम नजर आ रही है।

इस फोटो में कंप्यूटर नजर आ रहा इस फोटो में ऑफिस नजर आ रहा--

फोटो में ट्रक नजर आ रहा हैं।

इस फोटो में कांच नजर आ रहा इस फोटो में इस फोटो में लैपटॉप नजर आ रहा इस फोटो में गेट नजर आ रहा।

इस फोटो में कुर्सी नजर आ रही। इस फोटो में --

फंक्शन नजर आ रहा है इस फोटो में लाइट नजर आ इस फोटो में।

इस फोटो में बिल्डिंग नजर आ रही है इस फोटो में मशीन नजर--

कैंटीन नजर आ रहा इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा इस फोटो में द इवेंट किंग नजर आ रहा इस फोटो में कुर्सी नजर --